इस छवि में एक औरत नजर आ रहा है।

इस छवि में बहुत सारे पौधे भी नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर एक बुक स्टोर की है।

इस चित्र में बहुत सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

इस छवि में एक पोस्ट ऑफिस नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में पौधों में सफेद रंग के फूल खिले हुए हैं।

यह तस्वीर बाजार इंडिया मॉल की है।

इस तस्वीर में कई सारे पेड़ पौधे हैं।

आदमी ने गुलाबी रंग का शर्ट पहेना हुआ है।

इस तस्वीर में एक हरे रंग का और लाल रंग का वायर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे कई सारे जिम के मशीन्स है।

इस तस्वीर में एक पेड़ नज़र आ रहा है।

इस छवि में बीच में एक बहुत भरा झील दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में एक आदमी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक डस्टबिन नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक पुतला नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक सफेद रंग की गाड़ी नजर आ रही है।

शॉपिंग मॉल का नाम वैल्यू एंड वैरायटी है।

शॉपिंग मॉल के अंदर कई सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

विद्यालय का नाम महापुरुषा श्रीमंता शंकरदेवा विश्वविद्यालय है।

इस तस्वीर में कई सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बहोत बड़ा पत्थर नजर आ रहा है।